यहां पर बहुत सी किताबें नजर आ रही है।

यहां एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

कुर्सी और टेबल नजर आ रहे हैं।

आ रहे हैं। पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट नज़र आ रहे हैं।

बोर्ड पार श्री हिगलोंज बुक डिपो --

बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं।